चारों तरफ पेड़-पौधे लगाए गए हैं जो कि बोहत ही शानदार लग रहा है।

बहुत ही उम्दा किस्म का लग रहा है ये बीच में पानी है पहाड़ है बिजली के खंबे हैं छोटे-छोटे पेड़ हैं दूर से प्रो फोटो को क्लिक किया गया है।

सरिए की डिज़ाइन से लगता है कि घर बहोत ही अच्छा लग रहा है इस पे अब दो मंजिला बनने का मकान मकान मकान बनाने की तैयारी हो रही है इसमें।

वो भी बोहोत ही अच्छा लगता है हम अपने मनपसंद का कपड़ा यहाँ से खरीदते हैं और पहन के उसको और अगर अच्छा लगता है तो हम उसको ले जाते हैं अपने घर पे पहनते हैं घूमते हैं।

यहाँ पे हर प्रकार के खाने-पीने की चीजें मिलती हैं यहाँ पे। हमें जो जरूरत पड़ता है तो हम आ के यहाँ से ले जाते हैं। ऐसा नहीं है बोहत ही अच्छी शानदार घर बना है ये।

और लड़के भी हैं इसमें और कुछ लड़कियाँ भी हैं बच्चे भी हैं सब अपने प्रदर्शन कर रहे हैं स्ट्रेचिंग कर रहे हैं ग्राउंड में बैठ के आराम से।

सबसे अच्छी चीज तो इसमे काजू कतली है और बर्फ़ी भी रखी गई है लड्डू भी रखा गया है।

यहाँ पे जैसा देख सकते हैं हम की बोहत ही अच्छा हाल है।

यहाँ काउन्टर पे भी कैल- कैलक्यूलेटर रखा गया है साथ में मोबाईल लेके बंदा पोज़ मार रहा है।